यहाँ बगल में और मुझे यहाँ बहोत सारी पेड़ दिखाई दे रहे है घना जंगल सा दिखाई दे रहा है खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ--

वाह जी में कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ हरियाली दिखाई दे एक सूखा पेड़ भी सामने खड़ा हुआ हैऔर पीछे मुझे पहाड़ टाइप दिखाई दे रहा है और--